ऊपर की तरफ मे देखे तो पंखा दिखाई दे रहा है और गत्ते के कार्टून भी कई तरह के नीचे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सब जोकि सम्मानित किया जा रहा है ये एक बैठक या मीटिंग हो सकती है जिसमें जोकि अच्छा काम करने वाले को सम्मानित किया जा रहा है लेडिस होती जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

एक कार खड़ी हुई है एक स्कूटी खड़ी हुई है और खिड़की जालीदार खिड़कियां लगी हुई है वो दो बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं ऊपर की तरफ में एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें सभी प्रकार के फ्रेम लगाए गए है और दीवार पर भी कुछ फ्रेम जो की लगाए गए हैं।

इसमें आइटम भी रेको पर--

और अंदर की तरफ से देखूं तो ये बहुत ही नज़र आ रहा है ये नाइट का नज़ारा दिखाई दे रहा है जो कि इसमें लाइटिंग भी है।

बोर्ड लगा हुआ है जो की इंडिया मोटर्स के नाम से है और ऊपर की तरफ में ये पुराना जो कि लग रहा है और ऊपर की तरफ में आसमान खुला हुआ लग रहा है और --